सभी के सभी जिन्होंने यहाँ पर डाली हुई है और गुलाबी और एक नारंगी।

जहां पर कई सारे परिवार रह सकते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोटर बाइसिकल और दूर तक एक हमें कार नजर आती दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते है और दर्मिया में बहुत सारे कमल के फूल मौजूद है और कमल के फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत और मददगार होते है।

इस चित्र में हम देख सकते है ये एक क्लास रूम है जहां पे कई सारे चेयर और बेंचीस दिखाई दे रहे हैं कुर्सियां बैठने के लिए।

इस चित्र में हम देख सकते है की एक छोटीसी दूकान है वह पर हमें कई सारी जरुरत की चीजे मिल जाती है जैसे की छोटे बच्चो के लिए चिप्स चॉकलेट और बिस्किट्स होता है क्रीम वगैरा होती है।